इस हॉटेल में औरंगाबाद का जानामाना एक हॉटेल दिखाई दे रहा है।

कॉटर भी दिखाई दे रही है जहाँ पे सीढिया भी दिखाई दे रही है।

आजूबाजू में बहुत सारे पेड़ है और वहा पे कुछ चिन्ह दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में फुलो कि बाग बगीचाए दिखाई दे रही है।